और इसको साफ कर के हमलोग इसको गैस से पका के और तड़का लगाके और नमक के साथ ले के --

ये एक बैंक का ए.टी.एम. है यहाँ से पैसा निकाला जाता है।

और इसमें एक व्यक्ति बहार खड़े होके फोटो खींचे रहे हैं बैंक का बहार से।

बहोत सारे लोग हैं अब और एक आदमी जींस पेंट पहना है | बाइक पर बैठा है पेट्रोल डलवा रहा है साथ में उसकी वाइफ भी है|

ये एक मंदिर है मंदिर बहुत ही अच्छा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर मंदिर का ऊपर का भाग है ये इसमें अच्छा लग रहा है --